एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक अ बस दिखाई दे रही है काली सी कलर की और उस पर कुछ आदमी बैठे और एक दो आदमी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे है।

एक आदमी नीली शर्ट पहने हुई और एक पिंक पहने हुआ वहा पे खडा हुआ है। उपर की तरफ कुछ बोर्ड लगे हुए है बिल्डिंग के उपर कुछ काँच की खिड़कीया दिख रही है और नीचे कुछ स्कूटी और बाइक खड़ी--

उसपे एक अंकल खड़े दिख रहे जिन्होने नीले कलर का सूट पहना उनके पीछे एक लड़का दिख रहा जिसने ऊपर सिर पर पगड़ी पहनी हुई है एक आंटी दिख रही उनके पीछे एक लड़के के का टोपी दिख र--

और बोरि मे और भी बहुत सारे फूल रखे हुए दिखाई दे रही है। एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है जिसने येलो कलर की टी-शर्ट और लुंगी पहनी है।

एक मशाल जलती हुई दिखाई दे रही है स्टेज पर कुछ चित्र दिखाई दे रहा है एक दो कच्चे घर और कुछ पक्के घर हमको दिखाई दे रहे है।

और अगल-बगल उसके एक एक दीवार सी लकड़ी की बनी हुई दिखाई दे रही है पीछे एक बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। सफ़ेद से कलर का नीचे मिट्ठी पड़ी हुई--

कुछ तार बंधे हुई दिखाई दे रहे है। और उसके आस पास एक दो पेड़ भी दिखाई--

एक बिल्डिंग बनती नज़र आ रही और उसपर बहुत सारी लकड़ीकी सेंटरिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर दीवारसे लगा हुआ एक सोफा दिखाई दे रहा है जो हरे कलर का है और तीन-चार टेबल काले कलर की दिख रही है और कुछ चेयर्स रखी हुई ग्रीन और ऑरेंज कलर की व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है।